यहाँ पे सब देखने में बना हुआ है।

यह एक पैथोलॉजी का दुकान है जिसमें स्वराज पैथोलॉजी इसके सामने एक मकान हम्म सजावट किया हुआ है जिस के आगे दो व्यक्ति खड़े हुए हैं।

और आगे चार-पांच आदमी खड़े हुए हैं।

और यह बिल्डिंग काफ़ी अच्छा लग रहा है दिखने में।

यह एच.पी. हेल्थ क्लीनिक हैं जो डॉक्टर वरुण कुमार का हैं आंटी जो नर्स एवं हड्डी विशेषज्ञ हैं|

और ये सामने में एक दरवाजा लगी हुई है ये सरसा का इंजीनियरिंग कॉलेज है।